तक उस आ टेबल के ऊपर खड़े हुए हैं और कुछ ले कुछ ग्राउंड के अ अंदर खड़े हुए काफी रश दिखाई दे रहा वहां--

अ दिखाई दे रहे है और उनके टायर भी बोहोत कंपनी के दिखाई दिखाई दे रहे वहां पे लाइट्स भी ऑन हैं और फैन भी लगा हुआ है और कलरफुल साइकिल हैं बच्चों के लिए।

नेचुरल फोम्स बना अअ फॉर्म्स बना हुआ है जो अ कच्ची मिट्टी के ऊपर बना हुआ है अ काफी बड़ा उसका अ पोस्टर अअ प्रिंट --

और वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है और स्टेशनरी का सारा सामान रखा हुआ है टेबल भी वहां पे पड़ा हुआ है और आदमी फोन देख रहा है शायद।

कुछ लिखा भी हुआ है साफ क्लियर सा दिखाई नहीं दे रहा वहां पे रोड रोड के ऊपर ही कारे वगैरा मोटरसाइ --

और उसके दुकान के अंदर काफी लोग भी खड़े है उसके दुकान के बाहर एक्टिवा बाइक --

कनक वगैरा लो अ किसान बीज रहे हैं और काफी खेत काफी बड़े बड़े अ दिखाई दे रहे है लड़की ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।